जहा पर इनके आगे एक जेन्ट्स और एक लेडीज इनको गाइड कर रहे है और इन्ही के साथ ही ये डान्स करते हुए दिख रहे है।

तीन चार दुकाने है जिसमे कुछ लोग खड़े हुए है। बाहर की तरफ रेत का मलवा पड़ा हुआ है और बाहर भी कुछ लोग बैठे हुए है।

नीचे सजावट हुई हुई है माला ये लगी हुई है और लोग दूध लेकर जा रहे है साथी कुछ खाने पीने चिजे भी है इधर से कुछ औरते और बच्चे भी दिखाई देते लेते हुए दिखाई दे रहे है।

यह एक बहुत बडासा मंदिर हैं जिसमे सब तरफ डेकोरेशन हुई वुई हैं यहा पर गुलाबी--

ऊपर ये महाविद्यालय लिखा हुआ है जो की बड़ा गेट लेकिन छोटे गेट से एंट्री हो रही है बाहर की तरफ एक स्कूटी और अंदर की तरफ भी कुछ स्कूटी खड़ी हुई दिख रही है।

और ऊपर की तरफ और निचेत की तरफ कई सारे लोग दिख रहे है जो की अपनी-अपनी चेयर ढूंढ रहे है और अपनी-अपनी जगह पर बैठने की कोशिश कर रहे है यहाँ पर कई सारे पंखे वगैरा भी है।

ये एक पार्क है जिसमे कई सारी हरे रंग की घासे दिख रही है और बहोत सारे पेड़ भी है जो की साइडो मे लगे हुए है यहा पर चार घोड़ों की मूर्ति बनी हुए है जो की एक साथ खड़े हुए है।